ये जो तस्वीर है तस्वीर एक फंक्शन होल का तस्वीर नजर आ रहा है जो बहुत ही रंगबिरंगी डिजाइन में--

सफेद गोल्डन कलर रिंग से सजाया गया है बहुत ही बढ़िया लग--

जगह दिखाया गया है जहां लग रहा है कि ये गौशाला है।

हरियाली के बीच में सूरज डूबता हुआ नजारा जो है बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देख--

ये लग रहा है किट्रैक्टर का जो गराज है यहां पे ट्रैक्टर का रिपेयरिंग किया जाता है वही जगह --

एक गाड़ी भी पार्किंग किया हुआ लग रहा है औ--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

अ मैकेनिक्स के पास जो है ये बाइक को जो है ठीक कराने के लिए लाया गया है।

पुर्जे को कलर किया जाना बाकी है और जो --

एरिया में रखा हुआ है जो स्थान में रखा हुआ है बहोत ही गंदा है और बहोत सामान सब बिखरे पड़े हुए हैं।

लाल और सफेद रंग का क्यूबिकल है जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है सुंदर लग रहा है देखने में--

जो है एक फूल का दुकान का दर्शाया गया है जहां दोनों तरफ रेक लगे हुए हैं रे--

यह जो तस्वीर है तस्वीर एक बड़ा सा क्यूबिकल जो है कोई बड़ा सा--

टुबलाइट भी चल रहा है फैन भी है वाल में कुछ पोस्टर भी रखा हुआ है लगा हुआ है।

यह जो तस्वीर है तस्वीर एक--

ये जो तस्वीर है तस्वीर में बड़ा सा ग्राउंड दिखाया गया है।

और चारों तरफ हरियाली है हरे भरे पत्ते हैं।

अ पौ जो पौधे भी लगे हुए हैं फूलों के रंग बिरंगे बहुत--

में जो सामान जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है और--

मशीन जो है बहुत ही रंग बिरंग मशीन में रखा गया है ये लग रहा है कि कोई मशीनरी दुकान का जो तस्वीर है वहां से खी --

बिल्डिंग का दिखाया गया है जो पुराने जमाने का डिजाइन का है और--

जो है हरे बरे बड़े-बड़े पेड़ लग रहे हैं जिसमें हरे भरे पत्ते हैं बिल्डिंग का जो है।

एडमायर कर रहे हैं और बैठने का जगह भी है दुल्हा और दुल्हन का ऐसा लग रहा है।

ये जो तस्वीर है तस्वीर में जो है ये--

कुछ पंखों की तस्वीर लग रही है जाओ प्लेन में लगा हुआ होता है या कोई मशीनरी में लगा हुआ होता है पीछे में साइकिल है।

गोडाउन सा जैसा है तस्वीर गोडाउन का अंदर सा खींचा गया तस्वीर लग रहा है।